जिसके ऊपर लिखा है लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी ।

इस तस्वीर मे हमें देख सकती हूँ --

पर बोहोत सारे लोग बैठे हुए है ।